यहां एक हवाई अड्डा है। जिसमें एक पेड़ है और सड़क जैसा है। एक बच्चा है और बहुत गाछ है। एक झंडा का अथि है झंडा है। और एक पेड़ है इसमें और यहां हवाई अड्डा है।

और एक दरवाजा दिखा रहा है।

यह लग रहा है दुर्गा पूजा का मेला है कुछ-कुछ भी पर्व का मेला है जिसे जिसमें बहुत सारे आदमी हैं बहुत सारे सजे-धजे हैं सब आए हैं मेला घूमने यहाँ पर बहुत चुनु-वुनू लगा हुआ है।

यहाँ पर लिखे हुए हैं पुस्तकालय और यहाँ पर गाज है और इधर गिट्टी बालू सीमेंट है और मोटर साइकिल है टोटो है टेंपो है और इधर इस साइड मकान है।

और यहाँ पर एक लड़के बैठे हुए हैं बाल कटवा रहे हैं और एक अख़बार भी यहाँ पे दिख रहा है और दरवाजे भी है शीशे का।

य यहाँ एक चट बिछ रही है जिस पे बहुत सारी मछली है।